और बाहर में तसला और लोही दिख रहे हैं।

दो टेबूल लगे हुए हैं जिसपे बहुत सारे कॉपियां रखी हुई है और पर्दा बिछाया हुआ है।

पीछे बहुत सारे बैग दिख रहा है।

इस चित्र में एक बहुत ही बड़ा तालाब दिख रहा है जिसमें बहुत सारे फूल और पत्ते दिख रहे हैं।

एक इधर स्प्लेंडर लगा हुआ है।

ट्रेन आ रही है रेड बत्ती जल रहा है।